और एक आदमी चेयर पर बैठा हुआ है जो अपना काम कर रहा हैनीले रंग की शर्ट पहन के।

और दूर से पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर और गंगा जी की दूसरी साइड पेड़-पौधे हैंऔर एक साइड में--

बुक्स के नाम से एक दुकान है उसके बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है।

तो काफी सारा सामान है कुछ डिब्बे काउंटर पर रखे हुए हैं कुछ पाउच लटके हुए उसके बराबर में ही एक दुकान--

और फूलमाला लटकी हुई है पन्नी पैकिंग पैकिंग का सामान है गिफ्ट पैकिंग का भी सामान है टेप --

सामने एक शीशा लगा हुआ है शीशे में भी खड़ा हुआ आदमी दिखाई दे रहा--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

जूते की रो कांच की बनी हुई है।

ब्लैक कलर की टी-शर्ट पहने खड़ा हुआ है और एक आदमी ब्लू शर्ट --

और यहां पर कुछ कार कार भी खड़ी हुई हैं।

ये एक ट्रक है ट्रक बो काफी सुंदर तरीके से सजा हुआ है।

पट्टों में कुछ सामान रखा हुआ है एक वेंच पड़ी हुई है।

जो रेड कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पेंट पहने हुए हैं।

एक मार्केट है मार्केट में कुछ दुकानें है एक दुकान पे--

बच्चे एक किताब लेकर नोटबुक पर कुछ बना रहे--

जीने की तरह सीडी हैऔर ग्रिल लगी हुई हैब्लैक रंग की।

एक वाइट कलर की कार भी है और बिजली का एक खंभा भी खड़ा हुआ है।

यहाँ पर एक टेबल है टेबल पर आइसक्रीम रखी हुई है एक प्लेट में --

जो रेड ब्लैक कलर के कपड़े पेहने हुआ है एक--

एक फैन भी दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का और अलमारी में बहुत सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है कुछ सामान लटका हुआ भी है।

कुछ भगवान की मूर्तियां भी राखी हुई--

एक टेबिल है टेबिल पे दो कप रखे हुए हैं एक कप के नीचे दो प्लेटें हैं एक अह--

एक साइड वो जग रखा हुआ है एक ट्रे है ट्रे के ऊपर चम्मच भी है।